सामने दरवाजा एक दिया गया है जो लाल रंग की है नीचे बहुत सारे पत्थर है जो छोटे-छोटे है ऊपर के साइड पे सफेद रंग का बादल है।

और चर्च बनी हुई है सफ़ेद रंग के दीवार है अगल बगल परदे लगी गए है लगाए गए है जो हरे रंग की है।

असा बिल्डिंग है जो पीले रंग की है अंदर एक आदमी टहल रहा है जो फोन से बात कर रहा है सब बगल मे एक बड़ा सा दरवाजा भूरे रंग की सामने गेट लगी गई है जिस पर तार लगे गए है।

सामने एक बड़ा सा घर बनाया जा रहा है जिसके कालम मे बोरी लगाई गई है भूरे रंग की बोरी लगाई गई नीचे बहुत सारे लकड़ी पड़े हुए जो भूरे रंग की लकड़ी है बगल से एक सीड़ी गई हुई है और छत कारा एक छत भी बनाया जा रहा--

ये एक गिट्टी रखी गई है ह-म- नीचे एक बडीसी मशीन है जो सफ़ेद रंग की है बगल खंबे खड़े हुए है जिससे तार गई हुई है।

बीच मे मिट्ठी खुदाई गयी है दीवार चारो तरफ दीवार है खड़े किए गए है जो सफ़ेद और नीले रंग की है और ऑटो का रंग नीला है चारो तरफ पेड़ पौधे लगाए गए सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

जो लाल रंग का टी-शर्ट पहना हुआ है उपर के साइड पे बड़ा सा गोलासा चित्र बनाया गया जो हरे रंग की है। अगल बगल हरे रंग के पत्तीया--

सामने बहुत सारे टेबल लगे गए है खुर्ची रखी गई है उपर मघे रखे गए है जो सफ़ेद रंग के बहुत सारे लोग बैठे हुए है एक आदमी सामने के साइड पे जा रहा है अगल-बगल पे--

काले रंग की नीचे फर्श किए गए है जो सफ़ेद और भूरे रंग की फर्श है।

यहाँ चारो तरफ पेड़-पौधे लगाए गए है हरे रंग की पत्तीया है एक चौड़ा और लंबा नंदी है सफ़ेद और ए गोल्डेन कलर का आसमान दिख रहा है सामने बड़े-बड़े पहाड़ है।